कई सारी काली कुर्सी लाइन से रखे हुए दिखाई दे रही हैं।

शासकीय स्थानांतग्रीत महाविद्यालय जगदलपुर लिखा हुआ दिख रहा है।

यह कार सफेद कलर की दिख रही है।

यहां बोट भी खड़ी हुई दिख रही है।

यहा कहीं सारे बल्ले बी है।

समुद्र के किनारे का तट दिखाई--

यहां एक काले कलर के टी शर्ट पहने हुए लड़का सेल्फी लिया है।

यहां कई सारे सोलर पैनल के प्लेट लगे हुए--

रेस्टोरेंट के बाजू में एक कार खड़ी हुई दिखाइ--

कमरे में सारी लेडिस योगा करते हुए--

दिख रही है यहां कई छोटे छोटे बच्चे एक नाटक करते हुए--

नीले कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

का गेट दिखाई दे रहा है यहां--

भी खडे हुए दिखाई दे रहे हैं।